ये है फ्लैट का एरिया है जहां पर दो तीन अह बिल्डिंग फ्लैट की खड़ी हुई है। सात आठ मंजिला फ्लैट बने हुए हैं जिनका कलर व्हाइट है। कुछ फ्लैटों में ग्रीन कलर का कार्पेट बिछ बिछाया है। पास पास पेड़ पौधे नजर आ रहे --

यह किसी गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग है जहां पर अ गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग का नाम लिखा गया है और वह व्हाइट कलर से पैंट की गई है। और आधा हिस्सा पेंट --

यह एक बिजली का अ बोर्ड लगाय है। बहोत बड़े-बड़े खम्भे दिखाई दे रहे हैं जिससे छोटे-छोटे खम्भे भी जॉइंट है। आस-पास बहोत ज्यादा हरियाली है। बहोत पेड़ पौधे हैं। नीचे अ पार्क बना है। हुआ --

यह एक अ फ़्लैट के मैन गेट का अ माहोल है जहां पर अ अम बड़े बड़े गेट लगाए गए है फ्लैट का नाम लिखा गया है आगे एक लाल रंग की कार भी खड़ी है और मैन गेट में से एक गेट खुला है।

यहां एक आदमी है जो कि आलू लहसन मटर टमाटर प्याज नींबू ये सब बेच रहा है और पास ही में बहोत सारे लोग उस पर से सब्जियां खरीद रहे हैं।

यहां पर एक आंटी अंकल जा रहे हैं। आस-पास ठेलियाँ है सब्जी की लोग सब्जियां खरीद रहे हैं आस पास बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं बिजली के खम्बे हैं दिन हो रहा है।

यह एक मार्केट है जहां पर बहुत सारे लोग अं की भीड़ है कुछ लोग मोटरसाइकिल कुछ लोग स्कूटी कुछ लोग कार पर हैं।

यह एक सब्जी मंडी लग रही है जहां पे बहुत लोग सब्जियां लेने आए हैं पपीता और बहुत सारे फ्रूट्स भी यहां बिक रहें हैं और बहुत सारे यहां पे लोग खरीदने भी आये हैं।

यह एक सब्जी मार्केट का व्यू है जहां पर बोहोत हरी -हरी सब्जिया बेचीं जा रही हैं | सुबह का व्यू है बोहोत लोग सब्जियां लेने भी आ रहे हैं।